जिसका साइज है दो चार दो छ दो चार दो आठ और यहां पर--

उपर एक कमरा है। कमरे के अंदर बहोत सारे आइटम रखे हो--

और यहां पर एक बैटरी इनवर्टर का फोटो छपा हुआ है और लिखा है अमेज ।

यहां पर टेबल है बड़े बड़े और यहां पर अलग अलग रंग की कुर्सियां हैं।

यहां बिल्डिंग हैं जिसके नीचे य--

और यहां पर एक बड़े बड़े टेबल रखे हुए हैं।

इस फोटो में दिखाया गया है।

और यहां पर एक चश्मे वाला फोटो भी है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

टेंपू है यहां पर यहां पर से क्रीम है।

यहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं।

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

और परमिट है यहां पर क्लासेस लग--

पहेन कर कैप रेड लगा कर यहाँ एक वॉकिन स्टिक लेकर यहाँ गेम खेल रहा है और यहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाए गए हैं।

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

यहां पर बड़े स्टील की टंकियां बनी हुई है लोहे के पाइप है और यहां पर एक यहां पर छोटा सा कारखाना है।

और यहां पर बहुत सारे गिटार लगे हुए हैं।

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई हुई है ये एक स्कूल का सीन है।

झंडे बहोत सारे राल रंग के लगे हैं।